quiz in moodle पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि :
इस tutorial को recorded करने के लिए उपयोग किया गया है:
फिर भी internet explorer का उपयोग न करें इसके कारण कुछ प्रदर्शन विसंगतियां होती हैं
इस tutorial के अनुसार आपके site administrator ने आपको शिक्षक के रूप में पंजीकृत किया है और आपको कम से कम एक कोर्स असाइन किया है
यह भी माना जाता है कि आपने अपने course के लिए प्रश्न bank में कुछ प्रश्न जोड़े हैं
browser पर जाएं और अपने moodle site पर login करें
बाएं navigation menu में calculus course पर click करें
ऊपरी दायीं ओर पर gear icon पर click करें और फिर turn editing on पर click करें
basic calculus section के दाएं तल पर add an activity or resource link पर click करें
नीचे scroll करें और activity chooser में quiz चुनें
activity chooser के तल में add button पर click करें
name field में मैं type करूँगी quiz 1evolutes and involutes
then in the फिर description field में मैं दिखाए गए अनुसार text type करूँगी
display description on course page checkbox check करें इसके बाद हम timing section को विस्तृत करेंगे
open the quiz close the quiz और time limit के लिए चेकबॉक्स enable करेंगे
यह दी गई तिथियों पर और एक विशिष्ट समय अवधि के लिए quiz को खोलेगा और बंद करेगा
अपनी आवश्यकताओं के अनुसार तिथियां और समय निर्धारित करें मैंने उन्हें यहाँ प्रदर्शित के रूप में set किया है
फिर मैं समय सीमा 10 mins set करूँगी
when time expires field में 3 options हैं आपकी quiz के लिए उपयुक्त कोई एक चुनें
मैं open attempts are submitted automatically चुनूँगी इसलिए यदि छात्र जमा नहीं कर पाता है तो भी quiz 10 mins के बाद स्वतः जमा हो जाएगा
अब grade section को विस्तृत करें
grade to pass field में मैं passing grade के रूप में 2 type करूँगी इसका मतलब है कि छात्र को इस quiz को pass करने के लिए न्यूनतम 2 अंकों की आवश्यकता होगी
attempts allowed field में मैं 1 चुनूँगी यदि हम अधिक संख्या चुनते हैं तो छात्र एक ही प्रश्नोत्तरी का प्रयास करने में कई बार सक्षम होगा
ध्यान दें कि grading methodड्रॉपडाउन डिसेबल है
यह the सक्षम होता है जब एक से अधिक प्रयासों की अनुमति हो शिक्षक तब यह चयन कर सकता है कि grade के लिए कौनसा प्रयास किया जाए
अब layout section को विस्तृत करते हैं यहाँ quiz के लेआउट को निर्दिष्ट करने के लिए options हैं
default रूप से new page field dropdown में every question option चयनित है
सभी options को देखने के लिए new page field dropdown पर click करें
मैं every 2 questions option चुनूँगी आप अपनी पसंद के किसी भी option को चुन सकते हैं
अब हम question behaviour section को विस्तृत करेंगे
shuffle within questions dropdown के लिए yes चुनें
ऐसा करने पर प्रत्येक प्रश्न में सभी options को बदल दिया जाएगा
इसलिए प्रत्येक छात्र अपने quiz में प्रश्नों और options की एक अलग व्यवस्था देखेगा
how questions behave dropdown के लिए help icon पर click करें और विवरण पढें
मैं यहां deferred feedback option रहने दूंगा इसलिए मेरे छात्रों को उनके प्रयास जमा करने के बाद ही प्रतिक्रिया दिखाई देगी
अब overall feedback section को विस्तृत करने के लिए इस पर click करें
overall feedback quiz जमा करने और autograded होने के बाद छात्र को दिखाया गया text है
शिक्षक छात्रों द्वारा प्राप्त grade के आधार पर अलगअलग फीडबैक दे सकते हैं
मैं grade boundary 100% के लिए feedback के रूप में excellent performance type करूँगी
छात्र जो 50% और 100% के बीच score करेंगे वे excellent performance message देखेंगे
grade boundary 50% के लिए feedback के रूप में you need to work harder देखेंगे
छात्र जो 0% और 4999% के बीच score करते हैं you need to work harder देखेंगे
अब नीचे scroll करें और activity completion section पर click करें
completion tracking field के लिए dropdown पर click करें show activity as complete when conditions are met option चुनें
require grade और require passing grade के लिए checkboxes check करें
अंततः पेज के तल पर save and display button पर click करें
हम हमारे द्वारा दिए गए quiz शीर्षक के साथ एक नए पेज पर we हैं पढ़ें और सत्यापित करें कि पहले दिए गए सभी विवरण यहां प्रदर्शित किए गए हैं
यहां आप एक संदेश को प्रमुखता से देख सकते हैंno questions have been added yet
quiz में प्रश्न जोड़ने के लिए edit quiz button पर click करें
ऊपरी दायीं ओर पर maximum grade में 4 टाइप करें
quiz section के बाईं ओर पर pencil icon हमें इस quiz के शीर्षक को edit करने की अनुमति देता है यह उपयोगी है जब quiz में कई सेक्शन्स होते हैं
मैं section 1 लिखूँगी और enter दबाएं
फिर दायीं ओर पर shuffle checkbox check करें यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक quiz को हल करते समय प्रश्नों में फेरबदल होता है
shuffle checkbox के नीचे add link पर click करें
यहाँ 3 options हैं:
जैसा कि name से पता चलता है a new question link हमें एक नया प्रश्न जोड़ने में सक्षम बनाता है इसलिए मैं इस option का चयन नहीं करूंगी
from question bank link पर click करें
एक popअप window खुलती है इस option का उपयोग तब किया जाता है जब आप प्रत्येक छात्र के लिए प्रश्नों का निश्चित set चाहते हैं
चयनित category उस course के लिए default category होगी
option also show questions from subcategories default रूप से चयनित है
also show old questions उन प्रश्नों को दर्शाता है जिनका पिछले क्वीजेज में उपयोग किया गया
आप जिस प्रश्न को जोड़ना चाहते हैं उसका चयन कर सकते हैं जैसा कि मैं अभी कर रही you और फिर तल पर add selected questions to the quiz button पर click करें
हालाँकि मैं ऐसा नहीं करूँगी मैं शीर्ष दाईं ओर पर x icon पर क्लिक करके इस window को बंद कर दूंगी
shuffle के नीचे add link पर फिर से click करें a random question link पर click करें अन्य पॉपअप विंडो खुलती है
इस option के साथ प्रत्येक छात्र को प्रश्नों का एक अलग set दिखाई देगा और उनके लिए quiz को हल करते हुए उत्तरों पर चर्चा करना कठिन होगा
random question from an existing category में category में evolutes चुनूँगी
number of random questions में मैं 2 चुनूँगी
फिर इस dropdown के नीचे add random question button पर click करें
evolutes category से इस quiz में 2 random प्रश्न जुड़ जात हैं
फिर से दाएं तल में add link पर click करें
a random question link पर click करें category में involutes चुनें और number of random questions 2 चुनें
फिर add random question button पर click करें
involutes से 2 और प्रश्न इस quiz में जुड़ गए हैं
ध्यान दें कि quiz स्वतः ही 2 पेजेस में विभाजित हो गई है ऐसा इसलिए क्योंकि हमने quiz settings में पहले से ही यह option दिया था
एकदम दायीं ओर पर दूसरे प्रश्न के नीचे add link पर click करें
a new section heading link पर click करें
heading का name edit करने के लिए pencil icon पर click करें
मैं section 2 type करूंगी और enter दबाऊंगी
quiz को सेव करने के लिए ऊपरी दायीं ओर पर save button पर click करें
यहाँ प्रत्येक quiz प्रश्न के दायीं ओर 2 icons हैं: preview question और delete ये स्वव्याख्यात्मक हैं
delete question quiz से इस प्रश्न को डिलीट करेगा लेकिन प्रश्न प्रश्न bank में अभी भी मौजूद रहेगा
breadcrumbs में quiz के name पर click करें
दायीं ओर पर gear menu में preview quiz पर click करें
यह एक पुष्टिकरण window खोलता है यह छात्रों को सूचित करता है कि quiz समयबद्ध है और उनके पास प्रारंभ या रद्द करने का option है
मैं start attempt button पर click करूँगी
screen की दायीं ओर quiz navigation block है
यह timer के साथ प्रश्नों को sectionवार दिखाता है
यहां इस क्षेत्र से सीधे प्रश्न को edit करने का option भी है
अब navigation block में finish attempt link पर click करें
प्रश्न के name के आगे हर प्रश्न की स्थिति दिखाई गई है
पेज के तल पर submit all and finish button पर click करें
पुष्टिकरण popअप में submit all and finish button पर click करें
ध्यान दें कि grade overall feedback और question specific feedback सभी यहां दिखाए गए हैं
नीचे scroll करें और finish review link पर click करें
हम वापस quiz summary पेज पर हैं
पेज के शीर्ष दाईं ओर gear icon पर click करें edit quiz link पर click करें आप quiz से प्रश्न जोड़ या हटा सकते हैं
हालांकि यह किसी भी छात्र द्वारा quiz को हल करने से पहले किया जा सकता है
भले ही एक छात्र ने quiz हल करने का प्रयास किया हो quiz बंद हो जाती है हालाँकि प्रश्नों को आवश्यकतानुसार एडिट या जोड़ा जा सकता है
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में पहुँच गए है संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा कि:
यहां आपके लिए एक छोटा सा नियतकार्य है
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
spoken tutorial team कार्यशालाएँ आयोजित करती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया इस forum में समय के साथ अपने प्रश्नों को post करें
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है इस mission पर अधिक जानकारी दिखाई गई link पर उपलब्ध है
यह script विकास द्वारा अनुवादित है मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुडने के लिए धन्यवाद